ऑटो दिखाई दे रहा है और कई सारी यहां पे दुकान नज़र आ रही है कई सारी यहां पे पेड पौधे लगे हुए हैं।

ये फोटो है इसमें बताया है कि यहां पे एक--

कुछ फसल उगाई हुई नजर आ रही हैं।

पार्क बना हुआ यहां पे कई सारी चेयर लगी है और टेबल रखा--

ये फोटो है इसमें बताया है कि यहां पे एक--

आदमी दिखाई दे रहा है जिसने व्हाइट शर्ट डाली है और ब्लैक नेकर--

और कई सारे पीछे पेड़ पौधे नजर आ री हैं।

ये फोटो है इसमें बताया है यहां पे कोई--

आदमी दिखाई दे रहे हैं कुछ ईंटे दिखाई दे रही हैं।

और पीछे तारे दिखाई दे रही है।